दरवाजा खुला है सामने एक बड़ी अच्छी दुल्हन का फोटो और पार्लर का आपके जो भी सर्विस अच्छी देती हैं वो लिखा हुआ है।